एक बस का कलर ब्लू है एक बस का कलर वाइट है साइड में एक रिक्शा खड़ी है।

पुतले लगे हुए हैं पुतलो के साइड में कुछ कपडे टंगे हुए हैं उपर एक बड़ा बैनर लगा हुआ है।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

सामने एक जिम है जिम में एक लड़का खड़ा हुआ है लड़के ने वाइट कलर की शर्ट --

सामने एक दीवार है दीवार पर क्रीम कलर का पेंट हो रहा है।

छोटे-छोटे पौधों में भी लाइट लगी हुवी है।

दीवार नजर आ रही है दीवार पर पंखे लगे हुए हैं।

बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड पर होटल रूद्र रीजेंसी लिखा हुआ है ऊपर आसमान नजर आ रहा है।

कुछ पहाड़ी नजर आ रही हैं पहाड़ी हरी-भरी है।